है और यहां पे पर्दे भी हैं। छत में ऊपर फैन भी है और कुछ खंभें भी गड़ाए गए हैं।

मैदान भी है कुछ और यहां पे काफी सारे पेड़ पौधे पर लगे हुए है और लड़का कही और देख रहा है |

और यहां पे एक लड़का है वो हार्वेस्टर चला रहा है और काफी अच्छी तरीके से कट रही है गेहूं।